और जो बार में एक बाइक भी लगी हुई है जो बेहद ही अच्छी है और घर का नजारा भी बेहद खूबसूरत देखने को मिल रहा है।

जो बेहद ही अच्छे से डिजाइन से बनाए गए है और उसके पीछे इधर हरे- भरे पेड़- पौधे भी देखने को मिल रहे है जो बेहद ही अच्छी है हरे- भरे पेड़ -पौधे भी हैं।

लग रहा है यहाँ पे कोई जिम सेंटर है जहाँ पे एक लड़का अपना बॉडी बनाते हुए नज़र आ रहे है।

और बहुत दूर-दूर से स्टूडेंट लोग यहाँ पर आते हैं पढ़ाई करने के लिए भीड़ भी देखने को मिल रही हैं लोग का और यहाँ पर बहुत सारे आदमी भी है लैब में--

और यहाँ पे बेहद ही अच्छे हेयर स्टाइल करवाए जाते हैं फैस वॉश भी किया जाता हैं तरह-तरह की स्टाइल भी किया जाता हैं और बाल भी अच्छे से काटे जाते हैं यहाँ पे--

और भीड़ मे देखना मेरे सेलून मे--

ओर यहाँ पे बहुत सारे बंदर भी देखने को मिल रहै है जो बंदर लोग पहाड़ के ऊपर में बेठे हुए है ओर यहाँ पे बेठ के कुछ खाते हुए नजर आ रहै हैं।

में बहुत सारे आदमी लोग भी बैठे हुए हैं।

यहाँ पर बहती अच्छी हैबहुत सारा आदमी लोग है पूजा करने के लिए लाइन में जो खड़ा है देखने के लिए--

खेलते हुए नज़र आ रहे हैं क्रिकेट और यहाँ पे वाइट कलर से मैदान में भी मारे हुए हैं जोकि बेहद ही अच्छा नजारा है देखने को मिल रहे है मैदान सबके--

लग रहा है कोई पार्क का तस्वीर देखने को मिले जो बेहत ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिले पार्क का --

जो उसके साइड मे बोहत ही बड़ा बिल्डिंग देखने को मिल रहै हैं घर देखने को मिल रहै हैं जो लग रहा हैं यहाँ पर कुछ प्रोग्राम रखे गए हैं।